रोड है जिस पर एक बस खड़ी हुई है कुछ आदमी रोड से जा रहे है एक लड़का ब --

रोड पर उमम बहोत सारी मोटर साइकिलें ( और सब्जी का ठेला लगा हुआ है और कुछ आदमी जा रहे हैं।

एक कमरा है जिसमे रैके बनी हुई है और सामान रखा हुआ है।

एक हॉल है जिसमे बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं बैलून लगे हुए हैं गुलाबी पीले नीले सफ़े--

सामने एक बड़ा - सा अस्पताल है इंग्लिश में बहुत सारी पंखे लगे हुए है और लाइटें लगी हुई है।